की हमें ये पार्किंग लॉट देखने को मिल रहा है ऐसा लग रहा है की ये पूरी पार्किंग का एरिया है और पूरी मिट्टी वाला जमीन जमीन पर पूरी मिट्टी और पत्थर पड़े हुए हैं।

शाम का टाइम हो चुका है और ऊपर आसमान जो है हलका हलका अंधेरा सा नज़र आ रहा है उसमे और ज़मीन पर हम देख पा रहे हैं अ की खंबों में लाइट जली हुई है जिसकी रोशनी पूरे ज़मीन पर पड़ रही है और --

स्कूटी और कुछ बाइक और उसके आगे एक और ग्रीन कलर की कॉममर्शियल वेहिकल हमे चलता हुआ नजर आ रहा है और साइड की हम बात करे तो एक ऑटो रिक्सा हमे दिख रहा है आगे की तरफ जाता हुआ।

अ नज़र आ रही है हमें और नीचे कि तरफ जो हेन्गेर्स हमें देखने को मिल रहे हैं काफी प्यारे प्यारे और काफी अच्छे अच्छे अ लगा कर रखे वहां पे लेडीज कपडे और यहाँ पर कुछ भी है जिनकी ऊपर की मुंडी नहीं है और उनको कपड़े पहना कर रखा हुआ है।

और जो बिलकुल हैंगर्स में अटकाके रखे हुए हैं और हम देख पा रहे है की काफी प्यारा ये लग रहा है कोई शॉप वगेरा लग रही है हमे देखने में।

लगता हैं की एक ग्रीन कलर का ग्राउंड हमें दिख रहा है और उसमे बहौत सारे बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने ज्यादा तर लोगों ने रेड टी-शर्ट पहनी हुई हैं।

और नीचे की तरफ वाइट कलर का फ्लोर हमे देखने को मिल रहा है और पीछे की तरफ कुछ और भी लकड़ी के ब्राउन कलर के सामान वगेरा रखे हुए हैं गेट वगेरा देखने को मिल रहे हैं।

तो एक ब्लेक कलर की हमें ट्रे दिखने को मिल रही है जिसमें चाय कॉफी टाइप कुछ रखा हुआ है और काफी प्यारी लग रही है उसमें कुछ झाग भी हमें देखने को मिल रहें हैं।

पिक्चर की हम बात करे तो यह पे हम देख सकते हैं पैसे निकालने वाली मशीन हमें नजर आ रही है जिसमें कुछ बटन वगैरा बने हुए हैं एक दो तीन चार करके और वहां पे कुछ ऑप्शनस् के लिए भी हमें बचन बटन देखने को मिल रहे हैं और ऊपर जो इस खे --

चेयर भी लगी हुई है और साथ में कुछ सैनिटाइजर वगेहरा ऐसी चीजे भी रखी हुई देखने को मिल रही है पीछे की तरफ और भी सामान रखे हुए हैं जो की काफी सारे हैं यहाँ पे कोई शॉप जैसी --

देखिये हमे एक बाइक देखने को मिल रही है और जो क- अ-जो कलर है वो ज्यादातर अ ब- ब्लैक सा कलर हमे देखने को मिल रहा है बट वो बाइक का पूरा स्ट्रक्चर है।